बहोत सारे यहां गेस्ट आए हैं बहोत सुंदर पर्दे हैं।

यह मुझे अच्छा लगा यह हरियाणा राज्य परिवेहन सरकारी डिपू है चरखी दादरी का--

इसमें बच्चे आते हैं अक्सर और कुछ लड़कियां भी इसको अच्छा लगता है क्यूट क्यूट लगता है।

पॉकेट कैफे लिखा है तो जरूर ये कैफे होगा--

बहोत सुंदर लग रहा है मार्बल का फर्श है।

भिंडी बड़ी टेस्टी होती है भिंडी गर्मियों में आती है सीजन अच्छा है।

खंबा है बिजली के तार हैं खंभे से अटैच हैं।

ये अच्छा है बहोत सुंदर लाइट है यहां ब्रांडेड परफ्यूम मिलते हैं।

हिरण बड़ी क्यूटली देख रहा है हिरन बहुत ही सुंदर है।

चारों तरफ पेड़ पौधे हरियाली है।

मिट्टी गिरी हुई है शायद ट्रक फैक्ट्री में मिट्टी ले जा रहे हैं कोई काम हो रहा है।